और हम एक पीछे बैनर भी देख सकते हैं जिसमें फर्स्ट सेलिब्रेशन अंग्रेजी में लिखा है।

जहां पर बहुत सारा सामान बाहर और कुछ सामान अंदर रखा हुआ है जैसे कि बाहर हम देख सकते हैं प्याज और आलू नजर आ रहे हैं।